यह एक रेस्टोरेंट दिखाया गया है जो लकड़ी लकड़ी से बना हुआ है एक रूम सा है।

लाइट भी जल रही है नीली और रेड कलर की और--

और कुछ बड़ी साइकिल भी हैं और बच्चों की साइकिल भी है और लाइट जल रही है।

यहां पास एक बड़ा सा मकान बना हुआ है।

यहां पास लंबे से पेड़ भी लगे हुएं हैं और एक लाइट खंभा लगा हुआ और दिन का समय है और एक पोस्टर भी लगा हुआ हैं।

और दो बिल्डिंग भी बनी हुईं हैं जो दिख रहा है और बहोत प्यारा लग रहा है नीचे--

पुरुष खड़ा हुआ है यहां पास गणेश जी की मूर्ति रखी हुई है।

खरीदे जाते है यहां पास कुछ पैकेट की चीज भी टंगी हुई है फेवीक्विक भी दिख रहा है।

और बहुत सारे पेड़ पौधे लगे हुए हैं।

मकान बना हुआ है जहां पास कुछ व्यक्ति खड़े हुए हैं और दो बच्चे खड़े हुए हैं। एक बुजुर्ग थैली में कुछ समान लिया हुआ है।